यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

और अंदर इलेक्ट्रिक मीटर रखा हुआ है।

पानी का रंग यहां पर हरा हरा दिख रहा है।

जिन पर ढक्कन लगा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

रोड के बगल में एक लकड़ी की बाउंड्री बनी हुई है।

सामने एक छोटी सी शॉप दिख रही है जिस पर चिप्स के पैकेट टंगे हुए हैं।

जिसके ऊपर केलकत्ता इन स्टाइल लिखा हुआ है

यहां पर फर्श ब्लैक एंड व्हाइट कलर की दिख रही है।

जमीन पर मट्टी और बालू गिरे हुए हैं।

एक बोर्ड पर सेल फिफ्टी परसेंट ऑफ लिखा हुआ है।

यहां पर कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं।

अंदर भगवान की मूर्ति भी है।

सड़क के आजू बाजू ढेर सारे पौधे लगाए गए हैं।

यह चित्र एक रेस्टोरेंट के अंदर का है।

सामने एक पाइनएप्पल और कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं।

रोड के साइड में पौधे और गमले दिख रहे हैं।

यहां पर फर्श पूरा साफ दिख रहा है।

सामने कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

जिसके ऊपर बोहोत सारी लाइटें लगी हुई है।

हमने तीन व्यक्ति गाना गाते और बजाते हुए दिख रहे हैं।

यह चित्र एक गुरुद्वारे का है।

जिसके ऊपर पी_एस थ्री पी_एस फोर पी_एस फाइव के डब्बे रखे हुए हैं।

उधर में सामने एक व्यक्ति दिख रहा है।